यहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ लग रहे है यहां पे एक से एक सुंदर से सुंदर पेड़ खड़े हुए है यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ लगे हुए है।

ये एक बहोत बड़ी जिम हैं इसमें बहोत ज्यादा बच्चे जिम करने आते--

यहां पे एक पंखा भी लग रहा है।

एक काले रंग की बाइक खड़ी हुई हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे--

यहाँ पे एक मॅडम ने चप्पल भीं पहन रखीं हैं यहाँ पे एक लड़की ने --

यहां से अच्छे से अच्छी बहुत अच्छी आ जीजी--

यहां पे साइड में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लग रहे है।

ये एक बहोत बड़ा हाउस है इसमें ब्याह शादी होती है।

और यहां पे बहोत ज्यादा बच्चे खेलने आते हैं यहां पे अलग अलग कलर की लाइट जली हुई है यहां पे एक आदमी--

ये एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है यहां पे बहोत ज्यादा ट्रक आते जाते भी है और यहां पे ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है।

बहोत बड़े बड़े सुन्दर सुन्दर फूल खिल रहे है।

और यहां पे बाइक खड़ी हुई है। सफेद कलर की।

ए_सी भी लगी हुई है यहां पे बहोत ज्यादा बड़े बड़े पंखे लग रहे हैं।

यहां पे अंडे भी मिलते है यहां पे पानी की दुकान भी है।

और यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लग रहे है।